और ठेले की जो मैन लाइट है वो बंद है ठेला एक बहुत अच्छी--

वेह कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने टेबल पर नाश्ता भी रखा हुआ है।

पिक्चर मे एक बहोत बड़ा पार्क दिखाई दे रहे है। जहां एक व्यक्ति चेयर पर बैठा है और कुछ छतरियां भी लगी हुई --

और तालब के उस साइड बोहोत सारे पेड़ पौधे माउंटेन टाइप दिखा रहा है और स्काय भी दिख रहा है और बोहोत सी दीवार भी उठी हुई है।

मैगी में दो चमच डली हुई है और मैगी में शिमला मिर्च भी डला हुआ है और मैगी का कलर पीला है और मैगी में बोहोत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में भी एक स्टेचू दिखाई दे रहा है स्टेचू बहुत ओल्ड दिखाई दे रहा है और स्टेचू पर व्हाइट कलर का पेंट है।

जहाँ बहुत सारी लाईटे लगी हुई हैं और और इधर नीचे टाइलसिंग भी लगी हुई हैं और रेड मार्क भी दिया है।

पिक्चर में एक बहुत बड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है और ब्रिज पर बहुत बड़ी-बड़ी रेलिंग भी लगी हुई हैं।

इस पिक्चर में एक घर दिखाई दे रहा है और घर बहुत ऊँचा है और वह टीन शेड से बना हुआ है।

पेड़ पर हरी-हरी लीव्स भी लगी हुई हैं और पेड़ कुछ छोटे हैं तो कुछ बहुत बड़े-बड़े भी दिखाई दे रहे हैं और चट्टाने भी --

बहुत से गमले कांच के स्लैब पर रखे हुए हैं और गमले में बहुत सारे अलग-अलग तरीके के फूल लगे हुए हैं और लाईट--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

एटीएम बहुत बडा पोस्टर भी लगा हुआ है और एक व्यक्ति ब्लैक एन्ड व्हाइट कलर के कपडो मे खडा हुआ है एटीएम की दिवार व्हाइट कलर से पूति है।

इस पिक्चर मे बहूत शारी गाड़िया दिखाई दे रही हैं और गाड़ियों के जस्ट पिछे ही बहूत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं ।

शोरूम पर व्हाइट कलर की लाइटें बहुत ज़यादा लगी हुई हैं और कपड़ो में बहुत सारे कपड़े भी हैं जैसे जीन्स टी-शर्ट वगैर --